इस फोटो में एक रोड दिख रहे है रोड पर एक द्वार दिख रहा है जिस पर गणतंत्र --

गाय बांध के उसको चारा दिया गया है और बगल में एक गेट भी दिख रही हैं कुछ कपड़े भी रखे गए--

इस फोटो में एक बिल्डिंग दिख रही है जिस पे पेंटर लोन --

ओढ़नी भी लगी हुई है और एक आदमी काला कपड़ा में बैठा है।

फोटो एक घर का दिख रहा है जो घर के आगे एक साइकल लगी हुई है और एक बाल्टी रखा हुआ--